यह एक टोटो है। यह टोटो बहुत ही सुंदर है। इस पर लोग बैठ कर इधर उधर जाते हैं।

यह एक पेट्रोल पंप है। यह --